यह शर्ट पहना हुआ है स्काई रंग का और सर में बाल है जोकि काले रंग का है सामने एक औरत है जोकि बैठी हुई है निचे।

एक डब्बा दुकान के ऊपर एक बॉक्स लगा है एयरटेल लिखा हुआ है इसमें दो कलर का पैंट हुआ है सफेद कलर और लाल कलर कादुकान के सामने कुछ लोग खड़े है।

ये एक दुकान है जो की मिठाई की दुकान है जिसमें बहुत सारी मिठाइयां रखे है सभी स्टील के ट्रे में रखी हुई है।

ये एक मूर्ति है जो की काले कलर की है।

चारों तरफ पेड़-पौधे हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े हैं और जिन में हरी-भरी पत्तियां है कुछ पत्तियां झड़ चुकी हैं चारों तरफ हरे-भरे घास भी हैं दूर-दूर में एक सड़क है।